यह एक पार्क है | यह पार्क देखने मे अत्यंत सुन्दर है | यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं |

यह ए.टी.एम. के बहार एक गार्ड भी हमेशा तैनात रहते हैं।

यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई रहती है धोने के लिए --

बहुत बड़े-बड़े खेत हैं | यह खेतों के बीचों बिच बहुत सारे पेड़ भी हैं |

यह एक कपड़े की दूकान है यह कपड़े की दूकान में सिर्फ लेडिज के कपड़े ही मिलते है ।

यह महल लगभग सन् अठारह सौ में बना होगा यह महल --